छोटे पौधे भी देखे जा सकते हैं इन पोधो का रंग भी हल्का सा हरा है।

भवन के मुख्यद्वार भी देखा जा सकता है भवन के कुछ खिड़कियां भी --

कुछ वृक्ष सूखे भी हैं इन वृक्षों से कुछ दूरी पर कुछ शिलाएं रखी देखी जा सकती है।

लाल रंग के पुष्प लग रखे हैं मैदान के किनारे पे सफ़ेद दीवार भी है।

इस दृश्य में एक नहर दिख रही है इस नहर का पानी काफी गन्दा --

काले रंग का देखा जा सकता है नहर के किनारे कुछ शिलाएं भी है।

कुछ कलाकृति की गई है इन शिलाओं का रंग काला है इन शिलाओं के इसमें --

दिख रहे है इस कक्ष में कुछ लैंप दिख रहे है जो काफी तेज रोशनी प्रदान कर रही है।

पीछे एक वृक्ष है वृक्ष के समीप एक भवन भी देखा जा सकता है।

इस चित्र में एक कृषि क्षेत्र दिख रहा है इस कृषि क्षेत्र में एक किसान --